और ठेला जो है वो एक नॉर्मल ठेला है जोकि लकड़ी से बनाया हुआ है और जो साइकिल के पहिये है उसके पहिये लगाए हुए है।

सामने जो फोटो दिखाई दे रहा है वो केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का फोटो है।

ये मंदिर का फ़ोटो है। सामने एक घंटी लगी हुई है जोकि अ बहुत अच्छी तरीके से अ प्रीजेंट होती है और लाल कलर का ये मंदिर है।

ये जो फोटो है ये आ किसी सिनेमा हॉल के एंट्रेंस का फोटो है जहाँ पे बहुत सारे पिक्चरस का यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए है।

एक कलर ब्राउन कलर और वाइट कलर लगाया हुआ जोकि लोग लगाते है।

एक कीचड़ मे मछली पकड़ते हुये बच्चे का ये फोटो है जों की अ अ अ हरे अ कीचड़ मे अपने पैर फसाके --

ये जो फोटो है किसी अ झरने का फोटो है जहाँ पे लोग झरने में --

और डैम पे जो रिजर्व वाटर जो है वो हरे रंग का दिखाई दे रहा है और पर्यटक ने टोपी और चश्मा पहना हुया है।

फोटो में पीवीआर सिनेमा हॉल का जो --

यहाँ पर जो है भारतीय हॉस्पिटल एवं ट्रॉमा सेंटर एन्ट्रन्स का फोटो है। यहाँ पे पार्किंग के लिए बोहोत पर्यात

यह फोटो में एक सर्वेयर अपना सर्वे कर रहा है। सर्वेयर मोस्टली जो अ लैन्ड जो है अ जमीन नापने की --